ये कोई गवर्नमेंट का कोटा होगा देख के ही पता चल रहा।

और वहाँ पर बहुत कुछ रखा गया है रेस्टोरेंट्स के अंदर भी |

और यहाँ पर बहुत ही अच्छा लग रहा है नजारा --

यहाँ पर अता है और पूजा करता होगा मुस्लिम म् --

खेलने के लिए व घूमने के निए और पेड़ पौधे भी है इध् --

बहुत सारे यहां पर हां ड्राइवर गाड़ी यहां पर --

हर बेंच में बच्चे बैठे हुए हैं और अपना काम कर रहे --

नजर आ रहा है थोड़ा छोटा-मोटा पानी का।

बेंच बगर नज़र मारा है। कुछ सफ़द कलर का कुछ बेंच है और कुछ --

पुण्य का पार किया बहुत बढ़िया नेचर का --

यहाँ पर बहुत सारा कुछ टेबिल --

बहुत बड़ा ये जो है ये जो लेख है।

का और देख की पता चल रहा --

बैनर में आधार का जो सिंबल है लोगो है वो दिया गया है।

और बोहोत ही इसका पाणी है। पाणी तो बहुत है इस रिभर का।

डांस बहोत ही अच्छा लग रहा है ये जो कल्चरल डांस वर्क में होता है बहोत ही अच्छा है।

बोत सारे यहाॅं पर बाइक बैगरा अं टू व्हीलर वगैरह खड़ा होय --

बहुत ही बढ़िया है ये जो नज़ारा है नेचर --

और यहां पर भी हम देख रहे है एक रूम के अंदर एक बहुत अच्छा से डेकोरेट किया गया है बैलून --

तो बड़ा मछली से ले के शुरू कर के छोटा मोटा मछली भी यहाँ पर मिलता है और यहाँ पर बहुत सारे सेलर भी होता है।

और वहाँ एक दूर में थोड़ा सा बड़ा सा एक ऊंचा बिल्डिंग दिखाई दे रहा है।

ये तो बहुत ही बढ़िया एक मंदिर हमे नजर में आ रहा है मंदिर का दो चूड़ा नजर में आ रहा है।

यहाँ प थो बहुत बड़ा एक ग्राउंड हमे नज़र में आ रहा है और या पर बहुत सारे कुछ बन्दको हमे देखाई दे रहा ह कुछ लोग बैठा भी है।

पोर्ट्स का अलग-अलग जो ड्रेस होता है वो यहाॅं पर मिलता नज़र में आ रहा है तो बोत ही बढ़िया ये जो चीज़ है।

प्लानिंग कर के इसको किया गया है छोटा-मोटा पेड-पौधा को लगाया गया है तो बहुत ही अच्छा है नजारा तो --